घर के सामने एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां समारो स्थल के अंदर --

स्टेज के ऊपर अनेक गुलदस्ते रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और मेले के अंदर काफी भीड़ दिखाई दे रही है।

खेत का है जहाँ खेत के अंदर बड़े बड़े पेड़ लगा रखे है।

और यह पेड़ काफी अधिक मात्रा में लगाए गए हैं।

यह दृश्य एक कंपनी का है जहां कंपनी के अंदर कंपनी के वर्कर --

इंडिया का ए_टी_एम बैंक है जो कि चौबीस घंटे खुला रहता है और ए_टी_एम बैंक के अंदर एक --

यह दृश्य एक गेट का है।

यह दृश्य एक जानवर का है यह एक घोड़ा है।

घास चरते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ एक और घोड़ा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

काफी सुंदर बनाई गई है और इमारत काफी --

यह दृश्य एक दुकान का है।

यह दृश्य एक समारोह स्थल का है जहां समारोह स्थल के बाहर --

अच्छी-अच्छी लाइटों से सजा रखा है।

यह दृश्य किसी दुकान का है जहां दुकान के बाहर --

साधन खड़े हुए दिखाई दे रहे है जिन में कुछ मोटरसाइकल स्कूटी है और एक स्कोर्पीओ या बोलेरो गाड़ी है।

यह दृश्य एक कॉलोनी का है और कॉलोनी के अंदर --

समुन्दर के तट के किनारे कुछ व्यक्ति महिला --

उनते हुए दिखाई दे रहे है और सूर्य उगता हुआ नजर आ रहा है।

या छोटे टेंट लगा रखे हैं और ये काफी अधिक संख्या में --

बनाए गए हैं और यहां कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।